ये लाइफ टाइम हॉस्पिटल लिखा हुआ दिखसता है माला इस पेड़ के आसपास काफी सारे पेड़ पौधे और घासे लगी हुई दिखसती है माला या कुछ लोग भी चलता हुआ दिखसते है।

माला यह एक काफी बड़ा सा पूल जाता हुआ दिकसत आहे मला यह पूल के बाहर काफी सारे बड़े बड़े पेड़ और काफी सारे बड़े बड़े पौधे भी दिखसते है।

माला या रोड के किनारे काफी सारे घर भी दिखसते है माला या रोड के किनारे काफी सारे ऊंचे ऊंचे पेड़ और काफी सारे ऊंचे ऊंचे पौधे जिनके नीचे काफी सारी घासे भी उगी है दीखसते है।

माला यहा सीडीयोंके साईड में कुछ गेट भी लगे हुए दिख सकते है रास्ते कही जाने के रास्ते खुले भी दिख सकते है।